एक पंखा और एक सोफ़ा

और एक खंभा बहुत बड़े छोटे पेड़ है।

यहाँ बहुत सारे मूर्ति हैं एक बड़ा मूर्ति दो छोटे मूर्ति पीछे एक बंगला बंगले भी बहुत अच्छे है देखने में--

कार को मॉडिफाई करने में लग पड़ा है और कार को बनाए रहा हैं जिसमें कार मशीन

यहाँ कुछ वर्कर घर को टाइल्स लगा रहे हैं।

फोटो खिंचवा रहे हैं जिसमें हैं इनलोग क्लियर फोटो जरा लिया जा रहा है पर यहाँ कुछ लकड़े लड़की बैठे हैं।